इसलिए ऐसी जगह का माहौल बहुत जरूरी है अच्छा होना--

होटल का सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता है कि अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं रुकने के लिए तो उसका क्षेत्र कितना बड़ा है कितनी बैठने की लॉबी है।

ठाकुर विक्रम सिंह के कदम जिन राहों पर चल चुके हैं उन राहों पर घर जैसी तो कोई चीज ही नहीं--

कितने आदमी थे यही कोई चार-चार आदमी ओ चार-चार आदमी और तुम तीन फिर भी लौट आए खाली हाथ--

हम तुम युग युग के यह गीत मिलन के गाते रहे हैं गाते रहेंगे।